और बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे है हरे कलर में और दोनों साईड पेड़ है और बीच पानी में कूछ पत्थर जैसे डले हुए है।

यहाँ पे सामने एक घर बना हुआ है जिस में वाईट कलर का प्रिन्ट है और सामने एक गेट भी है और वहाँ से रास्ता भी गाया है सीधे।

ओर इधर साइड में कूछ अलमारी भी बनी हुई है।

सामने बालकनी से भी कुछ लोग देख रहे है और यहाँ सामने भी कूछ मरिया टाइप की बनी हुई है जहाँ पर भी लोग है।

यहाँ पे सामने से बादल दिखाई दे रहे है जो ब्लू स्काई कलर में और सामने पत्थर के पहाड़ जैसे बना हुआ है।

पीछे ब्लीडिंग जैसे भी बनी हुई है और पीछे बहुत पेड़ भी नजर आ रहे है ग्रीन कलर में ।